ब्लू कलर का येलो कलर का ड्रेस पैहन के --

साइड मे एक डॉगी और है जो सो रहा है।

ये एक येलो कलर का बहुत अच्छा सुंदर घर दिख रहा है।

ये एक रेलवे स्टेशन का अंअं रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन के ऊपर का अंअं --

ये बाहर का एक बहुत बड़ा एरिया है।

और इस्टेशन के ऊपर मे ब्लू ब्लू कलर की पट्टी भी दी हुई है सामने में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और अं --

इश्टे वो दिख रहा है बिल्डिंग वगैरह दिख रहे हैं।

ज्वेलरी शॉप में बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं साइड में ईयरिंग के कान के अँगूठियों के सब --

सामने मे प्याज कटी हुए रखे हुए हैं वह एक डोने मे चाट बनाकर उसमें छोले प्याज डालकर हाथ मे किसी को दे रहा है।

वहाँ पर एक येलो कलर का शर्ट पैहन के आदमी खड़ा है।

लोगों का आना जाना है बहुत सारी चेयर में लोग बैठे हुए हैं।

और साइड मे गणेश जी का बहोत बड़ा फोटो है।

बहोत सारे लाइट जल रहे हैं सामने मे दो आदमी बैठें हुए हैं।

और वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

ये बम्बई का रेनाल्ट शोरूम है।

पिलर टाइप का चार इंची का खड़ा हुआ है उसके ऊपर ब्लैक कलर की पट्टी में लिखा हुआ है पहाड़ी एक्स कर कर--

और उसके ऊपर बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

रेड कलर के फूल पिंक कलर के ऑरेंज कलर के चमेली के गोंदा के बोहोत सारे फूल दिए हुए हैं।